तस्वीरें लगी हुई है यहां पर भारत मां का भी पोस्टर बना हुआ है यहां पर यह सरकारी सु--

गनेश जी की जी हैं और यहां सामने दो आदमी खड़े हैं बनियान पहन--

इंक्रेडिबल थ्रेड्स यहां लिखा हुआ है।

इस दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है।

यहां पर एक बड़ी सी अलमारी रखी हुई है जिसमें शीशे का बड़ा सा रेक --

जो कि यहां इसे टंकी को बंधा जा रहा है।

और ये बहुत सारा ढेर रोटी का पड़ा हुआ है।

इस फोटो में दिखाया है की यहां पर बहुत सारे आदमी--

इस फोटो में दिखाया गया है--

यहां पे बहोत सारे मकान बने हुए दिखाए गए हैं।

और यहां पर है यहां पर बहुत सा--

जिसमें लिखा है ए कंपलीट फोटो प्वाइंट सुरेंद्रा डिजिटल स्टू--

एम_बी_बी_एस एम_डी मेडिसिन पी_जी_आइ_एम_एस रोहतक।

इस फोटो में दिखाया गया है कि यहां पर एक जाकोब्स नाम से प्राइड नाम से एक बैनर लगा हुआ--

इस फोटो में दिखाया है कि यहां पर एक जॉकी नाम से बैनर लगा है।

इस फोटो मे ऐसा लग रहा जैसे यहां पर एक खड़ा बनाया--

यहां पर एक स्विमिंग पूल में बहुत सारे बच्चे नहा रहे हैं और यहां पर हरे--

इस फोटो में दिखाया गया है कि यहां पर लिखा है एक बिल्डिंग पर भारद्वाज जच्चा बच्चा अस्पताल और यहां पर--

और यहां पर बहोत सारे गमले टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।